जैसे की हम देख पा रहे है यह एक मंदिर है मंदिर अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है उस के ऊपर लाल तथा सफेद रंग किया गया है तथा उसके चारो ओर लोहा के रड के दरवाजा दिखाई दे रहे हैं।

इनका रंग हरा है। तालाब को देखते हुए दो बच्चे नजर आ रहे है उसके ठीक बाजू मे एक--

जैसे की हम देख पा रहे हैं यह एक तालाब का चित्र है। तालाब की चारों और बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं जिनके पत्ते हरे रंग के हैं। तालाब के किनारे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।